दूल्हा दुल्हन ना सजाई हुई सजे हुए है और गोल्डन कलर का और वाइट कलर का--

नकासी किया हुआ काम दिखाई दे रहा हैं वहाँ पर कुछ हरे पत्तों का भी डेकरैशन किया हुआ हैं।

जमीन है वो अ भूरे-भूरे मिट्टी की पीली मिट्टी की भूरे मे हैं।

यह फोटो जो है वह सेल्फी लिया हुआ फोटो है और सामने जो लड़की है उसने वी करके --

यह फोटो जो है वो सेलून का फोटो है जहां पे बंदे के मू के ऊपर--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

नीचे का दरवाजा बंद है और शटर जो है वह नीचे आया हुआ है समय जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अंदर कुछ तो कर रहा है मशीन में भी बी --

अ सामने एक बच्ची जो है उसके हाथ में कैंची हैं और वो गुलाबी रंग का जो कार्डबोर्ड है उसको कट करने की कोशिश कर रही हैं।

और चर्च का सामने का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ है और उसके ऊपर लाइट से--

काम होते हैं उससे बनाया हुआ है ऊपर जो हैं गोलाकार फूलों का स्ट्रक्चर हैं नीचे छत जो हैं बनाई हुई हैं और नीचे कार्पेट जो हैं ग्रीन --

ये फोटो जो है वो पूरा कथून वास्तु की फोटो दिखाई दे रही है ये वास्तु जो है बोहोत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ये जो है वास्तु --

जो मोर खड़ा हुआ है वो का कांक्रीट का काम किया हुआ है ये मोस्टली अ गार्डन में पांचवें होता है उसका फोटो हैं।

जो एक्सरसाइज करने के लिए होता है वो है जिसका कलर ब्लैक का कुशन है सामने यल्लो कलर का कुशन --

ये फोटो जो है अ कंस्ट्रक्शन के साइड का काम करते हुए फोटो है वहाँ पे जो बंदे जो है वो मिक्सचर मशीन में कुछ माल डाल रहै हैं।

अ एक कारीगर जो है वह ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है अअअ वो कारीगर के सिर के ऊपर टोकरी है टोकरी के अंदर सीमेंट --

जो है अअअ उसके पत्थरो से चीरते हुए नीचे पट गिर रहा है पानी जो है झाग बनाते हुए नीचे आ रहा है।

अ आप देखोगे तो वहाँ पे लाल रंग का क्रीम कलर का ग्रे रंग का ब्राउन का ब्लू का और उसके बाद पिंक कलर का --

अ बिल्डिंग जो है वो अ सेम य सी शेप शेप की है और बिल्डिंग बहुत ची है आप देखोगे तो बिल्डिंग --

और सामने जो हैं दो साइकिल दिख रही है साइकिलिंग के लिए रखी हुई है अ जिसका कलर यलो है उसमें ब्लैक सीट उसपे हैं।